यहाँ टोटो गैराज दिखाई पड़ रहे है टोटो दिखाई पड़ रहा है ।

वाइट टेबल है चेयर भी है ।

यहाँ पे लगता है ।